पीछे एक औरत बैठी हुई है और उसके बगल मे एक लड़का बैठा हुआ है।

पीछे आदमी खाना खा रहे हैं।

पीले कलर की लाइट जली हुई है।

अंदर कुछ सामान पड़ा हुआ है।

एस एच ए के वाई ए कार सर्विस सेंटर ।

बाहर सीमेंट का मसाला है।

रेड कलर की येलो कलर की।

ये लड़का दीवार में स्किन ग्रीन स्किन बना के पढ़ा रहा है।

पीछे एक ब्लैक कलर कि कार है।

साइड में पेड़ पौधे हैं पी--

अंदर एक लोहे का झाड़ है।

है एक आदमी खड़ा हुआ है।

पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं खंभे है।

ट्रैक्टर पर एक लड़का पीछे हैंडल लेके लखा रहा है।

कुछ लड़के बैठे हुए है।

एक लड़की पेपर लिख रही हुई है एक पेपर देख रही है।

एस यू डी एच ए --

एक अपने हाथ पे हाथ रख के पीछे एक औरत बैठी हुई है।

यहां पर मेले में कुछ आदमी बहुत से आदमी आ रहे हैं।

नीचे छोटे छोटे घास है।

कलर है पीछे कुछ पन्नी टंग रही है।

पीछे कुछ पट्टियां रखी हुई हैं।

साइड में ऑरेंज और वाइट कलर की दीवार है।

यहां पर कुछ लड़के पड़े हुए हैं।

खिड़कियां हैं पेड़ पौधे हैं।

यहां पर एक रियलमी की दुकान हैं।

छे आदमी ने गुच्छे ऊपर उठा रखे है।

इसने ब्लू कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

पीछे ये टेबल रखे हुए हैं।

ग्रीन ग्रीन घास दिख रहा हैं।

बराबर में मोटरसाइकिल तेल भरवा रही है।

है एक पिपणी बजा रहा है।

पीछे पर्दे टंगे हुए हैं।

के नीचे एक कुत्ता सो रहा है।

यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

में नृत्य हो रहा है कवड़ा--

कुछ नीचे रखी हुई हैं।

ऊपर एक पेड़ दिख रहा है।

पीछे एक बहुत बड़ा पेड़ है।

चेयर भी है नीचे एक फर्श ब्राउन कलर का पीछे बोर्ड है।

यहां पर चार पांच गमले हैं लाल कलर के पेड़े कलर के हरे --

पीछे मकान दिख रहा है।

बहुत से आदमी खड़े हुए है।

यहां पर एक बर्डे पार्टी हो रही है।

ऊपर लिख रहा है बी_ए_आर_बी_इ_क्यू_इ नेशन ।

पीछे कुछ लोग खड़े हुए है।

एक बड़ा पेड़ है पीछे पेड़ का ढोला है शीशे लगे हुए हैं।